यहां हमे डेकोरेशन किया हुआ दिखाई दे--

यहां पर हमें पटरी दिखाई दे रही है पटरी के ऊपर एक ट्रेन हमें दिखाई दे रही है।

यहां लोग हमारे देश के साफ सफाई कर रहे हैं।

यहां पर हमें लाइटिंग्स भी दिख रही है।

हम यहां देख रहे हैं कि यहां एक बहोत ही सुंदर रेस्टोरेंट है।

यहां पर काफी सारे चेयर्स दिखा--